और उनकी परछाई पीछे आईने में दिखाई दे रही है और अअअ कुछ और साथी बैठे हुए है जिनकी परछाई आईने में दिखाई दे रही है धन्यवाद--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

इस चित्र में एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा है और आदमी का कलर अ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है।

यहाँ मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में ब्रश है और ब्रश करता नज़र आ रहा है और उसके कपड़े ब्लू कलर के धन्यवाद--

इस चित्र में कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और नीचे हरियाली है।

इस चित्र में कुछ अ पौधे दिखाई दे रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक पेड़ को जाम लगा हुआ है और वह एक आदमी हाथ में अ पकड़े हुए खड़ा है धन्यवाद।

इस चित्र में एक आसमान दिखाई दे रहा है आजू-बाजू में अ नीचे एक अ लाइन में बिल्डिंग के घर दिखाई दे रहे हैं।